खेत टाइप खेत टाइप है और सामने पेड़ बहुत सारे पेड़ हैं और एक घर भी है ।

यह एक कार है लग्जरी कार है जो एक गेराज में खड़ी हुई है।

और रेड कलर के बोड पर ब्लू गोल्डन कलर के कलर कल कलर से राइट होवा हुआ है।

और ये काफी इसके बराबर में एक रैड कलर का --

यह एक ड्राइंग रूम है जिसमें काफी सारी लाइट्स डेको दा लाइट्स की डेकोरेशन हुई है काफी।

काफी सारी बुक्स रही हुई है सामने डेकुरेशन के लिए ऐं काफी सारे शो पीस रखे हुए हैं ।

एसी लगी हुई है आउटडोर लगा हुआ है लकड़ी का इसमें गेट लगा हुआ है ।

रास्ता है रास्ते के साइड में पेड़ है एक खंभा है।

जिसमे बहुत सारी काफ़ी सारी केबलस जा रही है तार जा रहे है इधर को घर में और फिर ऊपर भी जा रहे है ।

यह एक स्कूल है एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिस।

एक आदमी खड़ा हुआ है जो सामान दे रहा है जिसके टी शर्ट पर जस्ट लिखा हुआ है ।

उसके बराबर में एक रेलिंग लग रही है सामने कुर्सी डाली हुई है बहुत बड़ी।

जिसके अंदर एक आदमी बैठा है।

एक बैठने का कुछ चेयर डाली हुई है सीमेंट की जो बनी हुई होती है एक घोड़ा बैठा हुआ है ।

सामने अ पॉट रखे हुए हैं जिसमें फ्लावर्स लगते हैं काफी सारे बहुत बड़े-बड़े पीछे पेड़ हैं।

काफी सारे बोर्ड लग रहे हैं आने का और जाने का इसमें काफी सारी डिजाइनिंग में इसका --

एक पेड़ के बिल्कुल बराबर में एक खंभा है जिसके ऊपर लाइट लग रही है बहुत अच्छी सी एक ।

काफी सारा बैठने का स्पेस डाला हुआ है इस पार्क में --

एक गैस सिलैन्डर रखा हुआ है फायर ब्रिगेड वाला औ--